बिल्डिंग की छत का कलर रैड नज़र आ रहा है।

नीचे से मुझे सड़क दिखाई दे रही है।

इसमें कुछ व्यक्ति भी नजर आ रहे--

झोंपड़ी के ऊपर छत पर घास बिछाई हुई दिखाई दे रही है।

पर चटानों पर एक व्यक्ति चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा --

इसका रंग सफ़ेद दिखाई दे रहा है।

इस पर आंखें नाक मुंह बनाया हुआ--

इसके चारों ओर दिए जलाए हुए दिखाई दे रहे है।

इसके पीछे से बोहोत सी लडीयां लगाई हुई--

यहां पर मुझे सड़क दिखाई दे रही --

सड़क पर दो बसे दिखाई दे रही है।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

अंदर बहोत सी कुर्सियां और टेबल नजर आ रहे हैं।

बाइक का रंग सब ब्लैक कलर का --

रै येलो कलर दिखाई दे रहा है।

नीचे से ब्राउन कलर नजर आ रहा है।

सड़क पर बहोत सी गाड़ियां चलती हुई नजर आ रही है।

और पीछे आसमान नजर आ रहा है।

आसमान नीला दिखाई दे रहा है।

यहां मुझे एक ऑफिस लैब लग रही है।

यहां पर बहुत से लोग दिखाई दे रहे हैं।

पीछे बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे है।

कार के पीछे एक बहोत बड़ा पे पेड़ दिखाई दे रहा है।

नोटबुक और बुक्स हैं दिखाई दे रही हैं।

यहां पर मुझे एक मंदिर दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर मुझे सैनेटरी पैड्स भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक टेबल पर प्लेट रखी हुई दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे बहोत बड़ी बड़ी बिल्डिंगे दिखाई दे रही है।

इसके चारों ओर घना जंगल--

यहां पर बहोत से फूल दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर दो महिला भी नजर आ रही है।

और नीचे इसकी छत का कलर लाक दिखाई दे रहा है।

यहा पर एक व्यक्ति खड़ा दिखाई दे रहा है।

यहां पर बहोत सी बिल्डिंगे दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे एक सड़क भी नज़र आ रही है।

उसमें बड़े बड़े चार बल्ब लगे हुए दिखाई दे रहे है।

यहां पर मुझे बहुत बड़ा ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

इसके बाहर एक टेबल कुर्सियाँ--

कुर्सियों का कलर ररैड नज़र आ रहा है।

यहाँ पर मुझे बहुत सारी बिल्डिंगे दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे एक ऑफिस लैब दिखाई दे रही है।